पारक में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर मे हमे एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है।

और समुंदर में पुल दिखाई दे रहे हैं काफी सारे सीमेंट के बने हुए और कुछ मशीनें दिखाई दे रही हैं।